हिंदुस्तान का पेपर दिख रहा है हिंदुस्तान दैनिक भास्कर का भी पेपर है और यहां पे बहुत सारी चीजें हैं।

और यहां पर जो है रोड बना हुआ है।

मुमताज के हेयर सैलून के अंदर कुछ काम चल रहा है।

मैदान बना है और यहां पर पेड़ जो है अच्छे से लगे हैं फूल भी हैं पत्तियां भी हैं सब कुछ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है।

ये जो एक चित्र है इसमें कुछ लोग जाते हुए दिखा रहे है।

ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है।

बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हुए दिख रहे हैं लोगों के साथ में खड़े हैं।

नो अंकल लिखा है बिल्डिंग बनी है वाइट कलर की--